सामने आप देख रहें है रंग बिरंगे पैकेट हैं जोकि पटाखे के हैं।

और यहाँ पे पीछे देखिए कुछ कपड़े रखे गए हैं खराब।

जो कि सफ़ेद जीन्स पहने हुआ है और ऊपर काला शर्ट पहना हुआ है और ये साइकिल के पास कुछ बोरे में साइकिल पे रखा हुआ है और बग़ल में देखिए कुछ आदमी हैं।

पीला है नारंगी है हरा है और इधर देखिए खाली प्लास्टिक रखे हुए हैं वो भी रस्सी से बांधे हुए हैं और इधर भी कपड़े हैं जो वो प्लास्टिक में रखे गए हैं और रस्सी से बांधे गए हैं।

ऊपर का देखे जो दीवाल है वो सफेद है और इधर गुलाबी रंग मे है।

जिसमे की अ ऊपर से छोटे-छोटे भी लोहे के तार जैसे दिख रहे हैं और नीचे भी दो तीन ऐसे छोटे-छोटे लोहे रखे गए हैं।

सामने आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा प्लस बना हुआ है और नीचे देखिये उसी की सफेद रंग की दीवार बनी हुई है और देखिये के आगे अ बहुत बड़ा सा टा टावर है और उस पे देखिये बहुत सारे गोले गोले जैसे बने हुए --

सामने देख रहे है आई.एम.एस पो पालीटेक्निक और यहाँ पर देखिए बोहोत सारा बड़ा सा शीशा जैसा खिड़की का बना हुआ है।

एक्स जैसा आकार दिया गया है और ऊपर देखिए नीले रंग का टीना जैसा बना हुआ है।

और देखिए अगल बगल एक बोहोत सारे पत्थर बिछाए गए हैं।

और बगल मे देखिए पौधे की ही बोहोत फुलवारी बनाई गई है और बड़े बड़े भी अगल-बगल बोहोत सारे पेड़ हैं।

और यहाँ पर देख रहें है की ये जो पत्थर है वो पीले रंग मे है और थोड़े नारंगी रंग मे भी है।

बड़े-बड़े चार्ट पेपर देखिये उधर लगाए गए है और नीचे देखिए आ उसे पट्टी लगाई गई है मैरून रंग की और इधर जो दीवाल है --

ऐसा है और उधर देखिए सामने बगल मे टंकी रखा गया है सफेद रंग का और घर बने हैं।